इनमे कुछ द लाल रंग की पत्तियां है हरे रंग के पत्ते --

की तरफ यहाँ लाइट लगी हुई है और दीव दरवाज़ा लगा हुआ है जो कि बंद है और एक कुर्सी रखी हुई है।

यहाँ पर अंदर की तरफ उ फ मॉल है और यहाँ पर बहोत सारे कपड़े रखे हुए है अलमारिओ में और जीरो परसेंट यहाँ पर ऑफ सेल लिखी हुई है।

और वहाँ पर एक अ पुतला लगाया गया है जो कि --

यहाँ पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी है और और ऊपर की तरफ छत है जो सफेद रंग की है लाइटे लगी हुई है पंखे लगे हुए है।

यहाँ पर आलमारियाँ बनी हुई है काले रंग की है जिसमें शीशे लगे हुए है।

और एक ऊपर की तरफ लैंप रखा हुआ है दो जिस पर सफेद रंग का ऊपर लगा हुआ है और नीचे की स्टैंड उसका पीले रंग का है।

गेट खुला हुआ है अंदर की तरफ एक महिला बनी है खड़ी हुई है और बाहर की तरफ दो दोनों तरफ दो शेर--

बने हुए है और यहाँ पर लिखा हुआ है श्री श्री राज देवी जय माँ समलाई और खिड़की बनी --

एक काले रंग की कुर्सी रखी हुई है बाहर एक टी_वी लगी हुई है दीवाल पर नीचे की तरफ रेक पर --

यहाँ पर एक ईमारत बनी हुई है जिस्म और ऊपर की तरफ बी टू नीचे की तरफ जी टू लिखा हुआ है।

सामने की तरफ एक गुब गुब्बारे वाला है जिसने एक बहुत सारे गुब्बारे लिए हुए है स्कूटी खड़ी --

आ है और पीछे की तरफ सीट बनी हुई है आगे की तरफ इंजन है और इसमें अ अ ब पीछे की तरफ पेड़ लगे हुए है और --

और रास्ता है दोनों तरफ दुकानें है कुछ व्यक एक व्यक्ति मेज के ऊपर बैठा हुआ है लाल रंग की बाल्टी है और --

यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने टी-शर्ट लाल रंग की पेहनी लाल काली रंग की पेहनी हुई है ।

के सामने पीले रंग का केला रखा हुआ है पीछे की तरफ यहाँ पे दीवाल पे ऊपर रोशन दान बना हुआ है जाली लगी हुई है अंदर की तरफ सामान रखा हुआ है ।

कुछ व्यक्ति खड़े हुए है और दोनों तरफ दुकानें है दुकानों में कपड़े टंगे हुए है सडिया टंगी हुई है।

और पार्क की तरफ कुछ व्यक्ति खड़े हुए है कुछ व्यक्ति यहाँ पर बाहर की तरफ खड़े हुए है और एक व्यक्ति ने शॉल ओढ़ रखा है ।

यहाँ पर एक बोरी है और बोरी टंगी हुई है हुक से नापने के लिए भार और यहाँ पर कुछ --

व्यक्ति खड़े हुए है पीछे की तरफ बहुत सारी सफेद रंग की बोरियां है और ऊपर की तरफ लाइट लगी हुई है और --

यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए है कुछ व्यक्तियों ने पिले रंग का हेलमेट पहना है ।

सफेद रंग की गाडी है एक अन्य दूसरी भी सफेद रंग की गाडी खड़ी हुई है पेड़ लग लगे हुए है ।

अंदर की तरफ टेंट भी लगा है नीचे की तरफ दरी बिछी हुई है जिसका रंग हरे रंग का है एक आदमी गुब्बारे ले कर बैठा हुआ है गुब्बारे --

यहाँ पर टेंट लगे हुए है कैंप टेंट है और जो की खुले हुए लगे है और इनका रंग काला नारंगी हरा --

और हाथी की आँखे है और उसके दाँत है सफेद रंग के --

और इसके इसने चश्मा लगाया हुआ है आस-पास इसके कुछ पत्थर ब --

और यहाँ पर एक व्यक्ति ने बिच में पेंट और शर्ट पहनी है आ बेल्ट लगायी --

यहाँ पर एक हमें दूकान दिख रही है जिसमें कुछ व्यक्ति खड़े हुए एक व्यक्ति हमें दिख रहे है यहाँ पर --

लाइट जल रही है ऊपर की तरफ बहुत सारी और अलमारिया लगी हुई है शीशे लगे हुए है।

कुत्ता लेटा हुआ है जिसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा है और दूसरे व्यक्ति ने नीले रंग का कपड़ा पहना हुआ है मास्क लगाया हुआ है हाथ में दस्ताना पहना हुआ है ।

यहाँ पर एक हॉल है और जिसमे ऊपर की तरफ लाइट लगी हुई है बहुत सारी और पंखा लगा हुआ है नीचे की तरफ ला --

उसके आस पास भी और भी गुलाल रंग की कुर्सियां हैं सीढ़ी लगी हुई है काले रंग की --

और यहाँ पर ता पीछे गेट की तरफ ताजमहल का एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसके आगे एक लड़की और एक लड़का खड़े हुए है और एक अ पी --

यहाँ पर बीच में एक मूर्ति बनी हुई है किनारे की तरफ दो काले रंगे की और दो --